यहां एक ब्यूटीफुल हाऊस है जिसके आगे बहोत आदमी लोग खड़े हुए हैं।

यहां पर बिल्डिंग बन रहा है यहां पर बहुत सारे आदमी भी हैं।

और ऊपर में झोपड़ी लगी हुई है।

यहां पर बस खड़ा हुआ है उसके आगे एक आदमी हैं।

पीछे में पेड़ दिखाई दे रहे हैं उसके बगल में भी एक बस है।

यहां पर एक दुकान है जिसके ऊपर सॉस रखे हुए हैं ऊपर में तावा भी है।

बोतल भी रखे हुए हैं दो चेयर रखे हुए हैं उसके बगल में लड़की है।

बाहर में दरवाजा है ना एक चेयर के ऊपर टब रखे हुए हैं।